इस चित्र में कार दिखाई दे रही है कार का आगे का ढक्कन खुला हुआ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में कई सारे भगवानो की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं।

नीचे ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

इसमें कई खिड़कियां लगी हुई हैं दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में फोर_जी केबिन दिखाई दे रहा है।

नीचे टाल्स लगी हुए ग्रुप टाल्स लगी हुई दिखाई दे रहे हैं।

है जो कि उसमें एक नाव भी है उसमें पर बहुत सारे आदमी भी है वह दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है और यह धार के साइड में बहुत बड़े-बड़े पेड़ पौधे हैं जो की दिखने में भी बहुत अच्छे हैं भयानक है जो ।

इस चित्र में मैदान दिखाई दे रहा है जहाँ बहुत सारे बच्चे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।